ये पेड़ का दृश्‍य बहोत अच्‍छा है और यहाँ पे व्‍हाईट से बादल भी दिख रहे हैं यहाँ पे पहाड़ भी दिख --

अरे वाह! आप यहाँ देेख सकते हो यहाँ पे बहोत ही अच्छा चित्र है और यहाँ पे बहोत सारे लोग खड़े हैं और यहाँ पे बैलून भी उड़ रहा है और यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे वाटर की टंकी है यहाँ पे बहुत ही अच्‍छे पहाड़ हैं और यहाँ पे पेड़ देख सकते हो आप वाह रे वाह ये तो बहुत ही अच्‍छा दृश्‍य है यहाँ पे एक घर भी है।

वाह! आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहोत ही सुन्‍दर केक रखा है इसमें दिल बन रखे हैं ये लाल कलर के दिल और व्‍हाईट कलर का है और यहाँ पे स्‍कूटी भी खड़ी है और सामने हमको एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे बहोत अच्‍छी मिट्टी है।

तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे स्‍टेट बैंक ए.टी. एम. है और यहां पे एक इंसान खड़ा है।

यहां पे एक बहुत ही सुन्‍दर-सा ग्राउंड हैं और यहां पे बहुत बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और ये ग्राउंड गोल-गोल सा है और यहां पे घर भी है |

यहां पे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा है। यहां पे इसमे लिख रखा है यात्री विश्रामग्रह तो यहां पे यात्री विश्रामग्रह है। यहां पे दो चेयर दो तीन चेयर भी है पीले कलर का झंडा लग रखा है।